बस स्टैंडो में देखने को मिलता है इसपे हम रेलवे स्टेशन से अपने निजी स्थान तक जाते हैं।

यह एक बगीचा है। यहाँ पे बहुत सारे फूलों के पौधे लगाए गए हैं रंग-बिरंगे फूल खिले हुए हैं और यह देखने में बहुत सुंदर लग रहें हैं।

सब्जियां लाई गई हैं। सामान लाए गए हैं और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे खाना तैयार किया जा रहा है । बहुत सारे लोग लगे हुए हैं खाना बनाने में ।